यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है जहां बहुत सारे लाइट के समान मिलते हैं।

देखने पे पता चल रहा है कैमरे बहुत सारे रंग बिरंगे कैमरा मिल रहा--

रेल पटरी के बगल में वहां एक छोटा सा घर है।

बगल में एक बहुत बड़ा खजूर का पेड़ है फिर इधर भी अगल बगल और सारे पेड़ हैं।

एक पेड़ है एक मजदूर अपने माथे में कुछ लेकर जा रहा है।

एक आशीर्वाद दे रहा है दो आदमी बैठा हुआ है।

चार पांच व्यक्ति खेत में हैं कुछ पेड़ के पास खड़े हैं।

घर का कलर सफेद है उसके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारे मोमबत्ती जलाए गए हैं मिट्टी के कढ़ाई में रखा हुआ है।

सारे मोमबत्ती अच्छी तरह से जल रहे हैं लाल जैसे कुछ भी रखा हुआ है।

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ए_टी_एम यहां पर बहुत सारे आदमी पैसा उठाने आए हुए हैं।

घर के सामने तीन बाइक खड़ा है एक व्यक्ति खड़ा है।

ग्रील का कलर डार्क ग्रीन है बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत बड़ा एक टावर भी है।

सभी यात्री केसरी रंग के पहने हुए हैं।

बहुत ही अच्छा बस है जो बहुत ही अच्छा सजावट किया गया है।